वर्कर भी यहाँ सब और बहोत भीड़ है गाड़ी में तेल लेके ऊपर से लाइट भी जल रहा हैं।

और अंदर टेबल लखे हुए हैं व्ही_आई_पी व्हाईट कलर में और स्टूल रखे हुए हैं।

जैसा मंदिर वगैरा में रेहता है कमियां पेर विंटर वैसी छजियां है।

और यहां पे ये मछली मारने वाले हैं।

काफी सारा समान अस्त व्यस्त है बेड पे भी समान अस्त व्यस्त है।

पीले रंग का मैट बिछा हुआ है टिफिन रखा हुआ है बहोत साम--

जीसपे ये लोग बैठे हैं हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे सरिया वगैरा भी बांधा गया हैं।

नीचे बहुत सारा कबाड़ फैला हुआ है दो बंदे खड़े हैं।

और ये कान में लीड लगाए हुए हैं--

किनारे किनारे पेड़ पौधे बड़े बड़े भी हैं छोटे छोटे भी हैं।

यह पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं यूनिफॉर्म में।

और ये बहोत सारा सामान भी रखा गया है इसका आगे।